देख सकते हो कि एक कॉलेज है कॉलेज के सामने कैंपस ही कैंपस में जहां कैंपस के बीच में--

बाहर है जहां देखो एक मंदिर टाइप का है जहां मंदिर के आजू बाजू पेड़ लगा हुआ है ये सिद्धि का ही है सिद्धि के बाजू में एक कार है एक माकन एक गेट है गा।

देख सकते है एक क्लिनिक है क्लिनिक के आजु बाजू देखो में कुछ लोग है मैडम लोग जो डॉक्टर लोग से--

उसके बाजू में बैंक के बाजू में एक ए_टी_एम भी है ए_टी_एम के बाजू में देखो कुछ लोग हैं।

कुछ लोग हैं जो बाल कटवा रहे हैं कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं देखो की वेट कर रहे देखो कि ये कुर्सी लगाकर बाल कटवा आ रहा ये--

देख सकते हो कि एक रेलवे लाइन है जहां देखो कि आजू बाजू लाइन ही लाइन लगी हुई है जहां देखो कि --

कुर्सियां ही कुर्सियां सजी हुई हैं दूर दूर तक कुर्सीयां रखी हुई हैं ऊपर देखो कि एसियां लगी हैं आजू बाजू जहां देखो कि--

के ऊपर एसीयां लगी ए_सी लगी पर्दे लगे हुए हैं बड़ी बड़ी सी दूरी

इटली ये ड-डब्बा रखा हुआ है नीले कलर का जहां देखोगे आजू-बाजू चिप्स रखे हुए ये रखे हुए हैं वो रखा हुआ --

बाजु में एक टोकरा लगा हुआ है कुछ लोग सामान वमान खरीद रहे है मार्किट में बहुत भीड़ लगी हुई है आजुबाजू लोग है गाड़ी आगे से चल लहे हैं।

कुछ लोग है जो एस_एस_एच जो है एम_एफ_एम_जी_एम स्कूल है जो कॉलेज का नर्सेग है नर्स कॉलेज है आजू बाजू देखो की बरी बरी बिल्डिंग है खंभे लगे--

देख सकते हो की किराने की दुकान है ये किराने की दुकान में देखा कि हल्दी वल्दी रखी हुई दाल वाल रखी हुई है।